मस्जिद है मस्जिद बहुत सुंदर है बहुत डिज़ाइन से बनाये गये हैं इस पर जंगला भी डिज़ाइन से बनाया हुआ है यह उजला कलर और ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है आसमान दिख रहा है।

के बगल में जो दीपक जल रहा है | उस मे यह बहुत अच्छा लग रहा है |